जो एक मंदिर के आकार की उ उसमें बैठी हुई हैं जिसमें भगवान बुद्ध हाथ जोड़े बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

तालाब में स्नान करते हुए एवं पूजा करते हुए दिखाई दे रहें हैं और बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

और इसके चारों और जीने दिखाई दे रहे हैं यह फोटो इवनिंग के टाइम का है।

है और एक टेबल पर स्टेपलर पेन और पेचिश भी दिखाई दे रहे हैं सामने एक कैलेंडर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।